दिखाया गया है जहां कुछ लोग बैठे हैं --

इस चित्र में एक विशेयत टैक दिख रहा है।

ऐसा लगता है कि वे खिलाड़ी हैं और किसी खेल के मैदान में--